और सामने कांच की बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हैं।

कुछ एक छोटा सा गार्डन है।

और शीशे का किनारा फिरोजी कलर का है।

जिसका दरवाजा शीशे का है इस पे लिखा है फोर जी ।

और बाहर वाले एक नीले कलर का बोर्ड है।

इसमें बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं।

साइड में एक बाउंड्री है जिसमें बहोत सारे हरे पेड़ हैं।

ऊपर रंग बिरंगी कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं।

इसके ऊपर कुछ डिब्बे रखे हैं।

इसमें चार खंबे हैं इसके ऊपर वॉल ए--

इसके ऊपर एस_बी_आई का बोर्ड लगा है।

कुछ फूल निकले हुए हैं जिनके गमले का डिजाइन चौकोर है।

साइड में एक आदमी बैठा है पेन लिए।

साइड में एक शीशे की खिड़की है।

और इसमें एक आग बुझाने वाला सिलेंडर भी है।

और नीचे ये खंबा बना है।

चार खम्बे के ऊपर टीन शीट डली हुई है।

इसमें एक कॉफी का फोटो बना है और एक श्श मिल्क शेक का।

जिसमें बहुत सारे व्हाइट कलर के सोफे हैं।

और पीछे एक छोटा छोटा तंबू टाइप में बना है।

और वह कुछ पेड़ बड़े बड़े दिख रहे हैं।

और ऊपर एक पंखा भी है।

जिसका कलर सफेद और काला है।

और इसमें पानी का फव्वारा लगा है।

इसके आगे एक आदमी भी दिख रहा है।

जिसके पीछे धान काटने वाली मशीन है।

और साइडों में बहुत सारे हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं।